कार्यालय पंचायत समिति नागपुर ये एक नागपुर का एक छोटा सा--

एक किक बॉक्सिंग है इसको मुक्का या लात वगैरा मार सकते है इसमे बहुत मजा आता है और ये बोल पड़ी हुई है इसमे हम बैठ सकते है जब दिल करे येल्लो कलर का।

ये देखिये एक बाहर से कार से आ रही है और इधर अंदर गेट के अंदर पानी भरा हुआ है।

वो वाह वाह वाह कितना प्यारा आसमान लाइफ मैंने कभी नहीं देखा काश इस आसमान को देखने का रियल में एक मौका मिले--

हलका स डार्क ऑरेंज मैरून बोल सकते है दीवाल का जो शेप है बहुत प्यारा डिजाइन है अंदर झाड लगे हुए है।